लाल पिले और हरे रंग की और बैगनी रंग की रात्रि का समय है यहाँ पर --

जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ यहाँ पर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बॉयज हॉस्टल लिखा हुआ है जोकि बोर्ड लगा हैं।

और यहाँ पर बास खड़े हुए है इसमें आसमान नीले रंग का --